गोल भी है इसमें कुछ नमकीन और कुछ चने भी है और उनके नीचे ट्रे भी है उन ट्रे के नीचे कुछ अखबार रखे हुए हैं।

बोर्ड भी है वहां में चॉकलेट कलर का है।

कुछ फ्रिज रखे हुए हैं फ्रिज नीला कलर के लाल कलर के और मटियाले कलर के भी हैं पे कुछ फूल भी उतरे हुए हैं।

बराबर साइड में एक नीली पट्टी भी है बाहर दो खंभे भी खड़े हुए हैं।

और वहां पे साइड में एक झोपड़ी सी भी है उस झोपड़ी के नीचे आदमी खड़ा है उस आदमी ने गले में बैग रखा है।

मुह छिपे है उनकी साइड मे एक आदमी और खड़ा हुआ है उसने चश्मा लगा रखा है व्हाईट--

बराब्बर साइड में एक कमरा भी है और उसपे जंगड़ा दिया है।

ले साइड पे एक हरे कलर से कुछ लिखा हुआ भी है और के बराबर में दो पिलर भी खड़े हुए है।

उसे मेज पे कुछ आधार कार्ड भी रखे हुए हैं उसके बीच मे एक खाली कागज भी है ओ इट उसके बराबर में कुछ पैन कार्ड भी रखे हुए नीले कलर --

दूसरी साइड में कुछ पेटियां धरी हैं इन पेटियों मे भी कुछ सामान है।

नीचे इसमें टाइल बिछी हुई है और पीछे ये इस पे टाइल लगी हुई है बराबर में दो कि तीन पेटी भी है।

हाथ में बाल्टी भी है और नीचे फील्ड में थोड़ा सूखा चुना पड़ा है वहां पे कट्टे भी रखा हुआ है।

बराबर में कुछ मकान बने हुए है मकान के जड़ में कुछ पेड़ भी हैं हरे हरे।

यह एक गेट है वैस गेट वो गेट खुला हुआ है उसकी बराबर में एक नीला बोर्ड भी है उससे आगे दुकान भी है।

और साइड में खंबा भी है इस खंबे एक बोर्ड भी है उसपे कुछ लिखा हुआ है।

और यहां इसमें कुछ कुंडी और चटकना और टंकी भी लटकी हुई है और यहां ऊपर छत में कैमरा और एक लाइट भी लगी हुई है।

वेह नीचे बोहोत बड़ी कंडी भी धरी हुई है व्हाइट कलर की।

उसमें अंदर ईंट भी लगी हुई है बगैर पलस्तर किए है।

यह एक रूम है व इस रूम में एक सोफा और दो कुर्सियां भी हैं इसके बराबर में सोफा के गद्दा भी है।

सोफों गद्दों पे कुछ तकिए भी रखे हुए हैं बराबर की साइड में कुछ पर्दे लगे हुए हैं पीले रंग के और लाल रंग के भी हैं।

यह एक सोफा है यह सोफे के गद्दे भी हैं व उन पे वह नीले रंग के हैं।

पहली साइड में कुछ आदमी खड़े हुए हैं और दो आदमी यहां पर कुछ सामान बेच रहे हैं।

और दूसरी साइड में दो पीलर खड़े हुए हैं नीचे समुद्र में और उसमें एक झंडा भी लगा हुआ है।

फिसलने का खिलौना भी है। प्लास्टिक और उससे कुछ प्लास्टिक की ग्रिल भी लगी है। ग्रील नीली लाल हरी और पीली है।

यह दीवाल पे कुछ चित्र भी उतरे हुए एक पेड़ भी है सामने एक बैनर है जिसमें कुछ कार्टून उतरे हुए हैं।

और उसके पीछे एक आदमी जा रहा है और उसेव आगे एक आदमी और बैठा हुआ है।

उसका हाथ में कुछ ग्लव्स भी पहने हुए है व उसका--

उस कोण्टर के अंदर कुछ सामान भी रखा हुआ है पिज्जा जैसा भी है और गिलास भी है ग्लास में कुछ आइसक्रीम जैसी भी है।

ग्राउंड पे तीन चार खिड़कियां भी है खिड़कियां बंद हो रखी है।

उसमें बीच में एक टॉवर्स जैसा विचित्र बना के रखा है दूसरे साइड में फूल भी उतरे हुए हैं।

साइड में एक कुर्सी भी है और एक हरे पत्ते में फूल भी है।

यह एक ग्राउन है वह उस ग्राउन में एक मेज भी पड़ी हुई है सीटों और सीट पर दो औरत और दो आदमी भी खड़े हुवे हैं।

अह बीच में एक जॉइंट भी है लोहे का अह नीचे हरियाली भी है वहां पे कुछ पेड़ भी खड़े हुए हैं वह पेड़ सब हरे हरे पत्तों के हैं एक लाल रंग का--

यह एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा जैसा महल है उसके सामने भी एक और गेट ऐसा ही है।

उसके अंदर जा के लाइट भी है और उनके ऊपर एक भी छुटा हुआ है वायर के ऊपर छत भी है टीन की।